यहां पर एक फोरव्हीलर कार पार्क की गई है लेफ्ट साइड में एक है राइट साइड में बहुत सारे हाउसेस है।

इस तस्वीर मे शेंडे टी अँड पान सेंटर नियर जिल्हा परिषद चौक भंडारा--

यहा पे एक मारुति सुज़ुकी की कॅब है जो की थाने नाशिक--

यहाँ पर भी फोर व्हीलर कार पार्क की गयी है अह राइट साइड मे अह ट्रीस है और लेफ्ट साइड मे बिल्डिंग्स है। हाउसेस है।

इस तस्वीर में फ्रंट साइड मे व्हाइट कलर की कार दिखाई गयी है पीछे सिक्स सेवेन बाइक्स है और और पीछे साइड ब्लॅक कलर की कार है।

इसमें ब्रांडेड कलर की शर्ट है जींस है ट्राउजर्स है पेंट्स है और एक--